इधर पर एक दुकान है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें एशियन पेंट लिखा हुआ है।

बहोत सारे पेंट के अलग अलग प्रकार के डिब्बे रखे हुए बाहर की ओर।

उस कार्यालय के नीचे एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

एक व्यक्ति है जो कि फोन पर बात करते हुए नजर आ रहा है।

कार्यालय के अंदर अ उसके अलावा और कोई ए नजर नहीं आ रहा है।

एक लड़की है जो कि यह चिट निकालते हुए वो बच्चे को अनाउंसमेंट माइक में कुछ बोल रही।

उसी शोरूम के बाहर दो या तीन है मोटरसाइकिल खड़ी हुई--

और बाजू में भी एक घर के सामने एक खंबा लगा हुआ है उस खंबे के सामने दो गाड़ियां खड़ी हुई है।

इधर पर आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ हैं जिसमें लिखा है आई_आई_एम आई_आई_एम लखनऊ।

ट्रक भी खड़ा हुआ है और उसके मिल के बाहर एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है जो की बिजली सप्लाई के लिए है।

बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे गमले के गमले रखे हुए हैं इनमें छोटे छोटे पौधे लगे हु--

हाँ हैंडवॉश के लिए अलग अलग प्रकार के सामान दिख रहे जैसे लाइब्वॉय का दिक रहा है और डेटॉल्स के दिख रहे हैं।